डॉक्टर पैर का इलाज कर रहा है।

किताबें मिलती है मैगज़ीन भी मिलते हैं।

यह एक दुकान है यह कपड़े की दुकान है यहाँ पे बच्चे के गंजी टी-शट मिलते हैं ।

सभी लड़की मील के नास्ता कर रहे हैं एक टेबल पे बैठे हुए है ।

काफी सारे आदमी यहाँ पे बैठे हैं एक साथ और टी.वी. देख रहे हैं।

यह मैदान में बहुत ही बड़े-बड़े घास में लगे हुए है।

सभी तरह के किताब मिलते हैं यहाँ पे मैगज़ीन नोट्सबुक सभी क्लास की --

यह घर बहुत ही बड़ा है। एक अलमारी भी रखी हुइ है।